--और बहोत सारे पोधे व फूल दिख रहे है और यहा पे पिंक कलर के येलो कलर के और पर्पल कलर के बहोत सारे फुल नजर आ रहे है हरे-हरे छोटे-छोटे पोधे भी लगे हुए है और यहा से पेड़ भी नजर आ रहे है।